का पेट्रोल पंप दिखाया जा रहा है।

धूप से बचने के लिए पेड़ लगे हैं।

यहां स्पीकर्स भी लगे दिख रहे हैं।

पेड़ दिख रहा है।

घर जा रहे हैं।

उन्नीस दिखया गया है।

कपड़े दिखाई दे रहे--

भारतीय स्टेट बैंक --